यहां पर काफी सुंदर वातावरण है हरे भरे पेड़ पौधे लगे है।

यहां पर बहुत सारे लोग हैं।

यहां पर बहोत बड़ा हॉस्पिटल है।

बाहर बहुत सारे पोस्टर हैं।

यहां पर एक आदमी बैठा है जिसने हुड्डी पहना है।

और यहां बहोत सारी दुकानें हैं लाइटें भी जल रही--

बहोत सुंदर डेकोरेशन है।

यहां पर बहोत बड़ा बिल्डिंग है बहोत सारे पेड़ और पौधे हैं।

दिन का समय है तेज धूप निकली हुई है यहाँ पर--

यहां प्लेयर खड़ा होता है तीन यहां पर गिल्लियां हैं।

यह दो पीड़ो के बीच खड़ा है।

यह एक बहोत बड़ा होटल है।

दिन का समय है मार्बेल मार्बल का फर्श है।

यहां एक दुकान हैं।

यहाँ पर स्कैनर भी रखा है।